उसी के पास में एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद और लाल कलर के बलून दिखाई दे रहे है।

सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।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

उस आदमी के हाथ में--

दूल्हा दुल्हन दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में तीन भैंस दिखाई दे रही है।

उस दुकान के अंदर बहोत सारे बैग दिखाई दे रहे हैं।